जो सफेद कलर के रह सफेद कलर के हैं।

रोड के साइड में एक सूखा हुआ पेड़ लगा हुआ है।

तामने भी बड़ी इमारत बनी हुई है।

इमारत के आस-पास पेड़े लगे हुए है।

यह एक नीले कलर का बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ बाहन पर लोग आ रहे हैं। कुछ बाहन से लोग जा रहे हैं।

बिल्डिंग के पास में एक खम्बा लगा हुआ है।

इमारत के पास में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

दुकान के अंदर एक लेडीज बैठी हुई है।

यहाँ एक झरना दिखाई दे रहा है। झरन झरने से पानी नीचे की ओर जा रहा है।

यह एक केक दिखाई दे रहा है केक के बाजू में --

पहाड़ दिखाई दे रही है कुछ लोग भी खड़े हुए है।

एक स्टूल रखा हुआ है उस पर एक आदमी बैठा हुआ है।